छह स्टूडेंट्स अपना प्रोजेक्ट बनाते हुए दिखाई दे रहा है।

के सामने में चार इंसान भी नजर आ रहा है।

स्टैचू के ऊपर में एक चांद और वायर का भी नजर आ रहा है।

इस फोटो में चार पेड़ जैसा भी दिखाई दे रहा है।

पास वाला दुकान के ऊपर चौधरी इंटरप्राइजेज लिखते हुए नजर आ रहा है।

इस फोटो में एक छोटा सा रूम दिखाई दे रहा है।

सामने वाला लड़की भी हाथ में पेड़ पौधा पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है।

दो लरका ब्लू और दो लरका व्हाइट कपड़ा पहना हुआ है।

टमाटर और बनाना भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक एक्समस ट्री का जैसा भी नजर आ रहा है।

औरत का साड़ी भी लाल रंग का है।

एक लड़का का टी शर्ट पिंक और पेन व्हाइट कलर का है।